यहां पे पंखे लगे हुए हैं गेट दिख रहा है लकड़ी का यहां पे पिलर्स में वाइट कलर का पेंट हुआ है यहां पे क्रीम कलर का और व्हाइट कलर का पेंट कॉम्बिने --

ब्लू कलर का पेंट है ऊपर टीन छपे हुए हैं यहां पे कुछ फन्संन टाइप का हो रहा है।

यह एक मंदिर टाइप में है यहाँ पर सजावट हुई है ऊपर घंटी लगी हुई है यहाँ पे सभी लोगों ने रेड कलर कपड़े पहने हुए हैं।

यहाँ एक ग्राउंड टाइप में है यहाँ पर बहुत ज्यादा हरे कलर की घास जमी हुई है पर बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ बैठने के लिए भी है।

दिख रही हैं | यहाँ पर दीवार के अंदर एक रूम है।

यह एक कार्यालय टाइप में है | यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हुइ हैं | निचे भी है | यहाँ पर स्कूटी टू व्हीलर दोनों खड़ी हुई हैं ।

घास जमी हुई है काफी ज्यादा पेड़-पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे बादल खुला हुआ दिख रहा है।